खर्च कर के और मेहनत से बनाया जा रहा है यह नल्ली को --

फोर व्हीलर कार लगे हुए हैं और बहोत सारे मोटरसाइकिल भी --

जिम कराए जाते हैं और यहाँ बहुत ही जि --

घूमने और इसको देखने और मज़े करने के लिए आते हैं।

बहुत ही अच्छे सुन्दर से --

ती सुन्दर और बहुत डिजाइनिंग मॉडलिंग से बनाया गया है।

बाल काटे जाते है क्रीम वगैरह लगा के और बहुत सुन्दर --

ये आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी मॉडलिंग डिजाइनिंग --

और यहाँ सूजमुखी का फूल और बोहुत सा --

ज्यादा जिम करना पसंद करते हैं।

और बड़ा है और अच्छा न बहुत दूर-दूर से लोग इसको देख --